यहाँ एक साड़ी का शॉप है जिसके आगे बहुत सारे साड़ियाँ लगी हुई हैं ।

और यहाँ का फर्श जो है चेस का चेस के ग्राउंड के तरह है और यहाँ पे कुछ कार्टून्स --

इस तस्वीर में एक गार्डन है यहाँ पे चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है।

और आसमान बिलकुल साफ़ नज़र आ रहा है और सामने के साइड में एक टॉवर भी है और यहाँ पे एक वुडन ग्रिल भी नज़र आ रहा है।

और सामने के साइड में कुछ लोग बैठे नजर आ रहे हैं।

और यहाँ पे एक पूजा मंदिर भी है छोटा सा और यहाँ पेटीएम का टैग भी लटका हुआ है।

और सामने के साइड में एक कोच है।

फर्श जो है वो वाइट कलर के टाइल्स लगे हुए हैं।

और वहाँ पे वाइट वाइट पर्दे भी लगे हुए हैं।

और इसके पोस्टर में--

इसका घर जो हल्का पर्पल कलर का है।

यहाँ इस पिक्चर में पांच लोग नजर आ रहे हैं।

और तीन कुर्सियाँ भी नजर आ रही हैं।

यहाँ पे चार पिलर्स भी दिख रहे हैं।

जिसमें कुछ सामान बिकते नजर आ रहा है।

और सामने का साइड में कोलगेट टंगे हुए हैं।

यहाँ पे चार औरत खड़ी हुई है।

जो खुद का सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहा है यहां पे--

और इसके पीछे साइड में कुछ चेयर्स लगे हुए हैं।

और एक गेट भी नजर आ रहा है।

यह एक पिज़्ज़ा शॉप का दुकान का फोटो है।

और यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है।

और यहाँ पे कुछ डिलीवरी वाली गाड़ियाँ भी है।

सामने के साइड में एक पुतला भी नजर आ रहा है।

और यहाँ पे काफी सारे बालूने लटकाई गई हैं।

और कुछ व्यक्ति साइड में खड़े भी नजर आ रहे हैं।

जहाँ पर कुछ फुटबॉल्स --

और शूज देखने को मिल रहे हैं।

और सीलिंग पे वाइट कलर की लाइटें भी हैं।

हेलमेट रखकर रखे नजर आ रहा है।

या किसी सब्जी मंडी का पिक्चर हो सकता है।

यहाँ पे लोहे का गेट भी दिख रहा है।

और उसके बगल में दो फायर --

जो रेड कलर के कपड़े पहने दिखाई पड़ रहे हैं।

व भी काफी भीड़ वाले जगहों पर खड़े हैं।

यह फोटो किसी पार्क का हो सकता है।

यहाँ पर एक डायनासोर का अ स्टैचू भी है।

और सामने में एक बच्चा है।

जहाँ पर एक व्यक्ति धनिया बेचते दिखाई दे रहा है।

और सामने में एक व्यक्ति चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

और इसके अगल-बगल में भी कुछ दुकानें दिखाई पड़ रही हैं।

ढेर सारी महिलाएं सोती हुई नजर आ रही हैं।

कुछ खिड़कियाँ भी नजर आ रही हैं यहाँ पे--

और यहाँ पे काफी सारी सामानें भी दिखाई पड़ रही है।

उसके बगल में एक रिंग लाइट भी है।

और इन दुकानों के ऊपर--

और कुछ साइकिल भी लगी दिख रही है।

यह एक आधार कार्ड से जुड़े--

आधार कार्ड से संबंधित--

कुछ टेबल पे काम करते दिखाई पड़ रहा है।

जहाँ पर ढेर सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

आसमान बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है।

आसमान में एक भी काले बादल नहीं है।

इस तस्वीर में एक फूलों की माला है।

और ये सर में लगाने के लिए गजरा भी है।

यहाँ पे कोई पूजा भी हो सकता है।

सामने के साइड में एक बड़ा सा--

और ऊपर में एक पुल भी है।

यहाँ पे एक बड़ा सा झील है।